ब्लैक कलर ब्लू कलर मेहरून कलर और सामने से एक आदमी भी आ रहा है।

और छत में पी_ओ_पी लाइट लगी हुई हैं। एक आदमी नजर आ रहा है।

नीला हरा पानी दिख रहा है नीला आसमान दिख रहा --

रेल्वे प्लेटफ़ॉर्म दिखाई दे रहा है टीन के टीन शेड भी लगे हुए है ऊपर।

मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें तीन खम्भे दिखाई दे रहे हैं मंदिर नही है मस्जिद है ये और उसमें सफ़ेद कलर का गेट है।

और उसमें बहोत सारे झंडे भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे कलर्स हैं उसमें झंडो में पिंक रेड ब्लू ग्रेन इस टाइप के कलर्स दिखाई दे रहे हैं सफेद कलर के बादल भी हैं।